नीचे जमीन पर हम लोगों के जूते रखे हुए देख सकते हैं नीचे सीढ़ियां भी बनी हुई है।

इस मैदान के साइड में एक टू स्टोरेज येलो कलर का बिल्डिंग भी है उसके सामने कुछ घर भी बने हुए हैं।

स्टेडियम के पीछे हमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर साइड में ट्रायंगुलर शेप के हट जैसे घर बन बने हुए हैं।

यहां पर ऊपर लिखा है श्री मध्यम हरिहर दास उच्च विद्यालय टेन प्लस टू ।

काफी दूर हम बहुत सारे जंगल जैसे पेड़ पौधे भी देख सकते हैं और ये देखने में शाम का समय लग रहा है।

इस घर के बाहर कुछ चेयर्स भी रखे हुए हैं।

यहां पर हल्की हल्की धूप भी आ रही है।

इस फोटो में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप को दिखाया गया है।

इस फोटो में हमे एक जिम का दृश्य दिखाया गया है। जहां पर काफी सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं।

इस फोटो में हम एक दो मंजिले का हरे कलर का बिल्डिंग देख सकते हैं।

ऊपर एक छोटी सी टेबल फैन का छाया भी देख सकते हैं।

इन घरों के पीछे काफी अच्छे अच्छे पेड़ भी लगे हुए हैं इस जगह पर काफी धूप भी आ रही है।

इस फोटो में हमें येलो कलर के दो स्टोरेज वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का शटर रेड कलर का है और ये एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ है।